दुकान में लगी लाइटें जो कि दुकान को स्पष्ट रूप से देखने में मदद दे रही है।

जो कि पानी से भरा हुआ है।

आदमी अपना मोबाइल में कुछ देख रहा है।

और दूर-दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है।

मैदान के बीचों-बीच एक पुल भीबना हुआ हैजो कि पानी को पार करने के लिए है।

वहीं किनारे पे बड़े-बड़े पेर भी लगे हुए हैं।

जिसका रंग सफेद है।

कमरे में एक आदमी भी खड़ा है।

जो कि फोन पे कुछ देख रहा है।

बच्चों ने कालाऔर पीला कलर का कपरा पहन रखा है।

जिससे एक मगरमछ बाहर आया है।

उसके साइड में एक पोल भी है जिस पे बहुत सारी तारे लटके हुए नजर आ रहे हैं।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

कमरे में कुछ बच्चे हैं जो कि डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसी में से एक बच्चा जो कि काले रंग की टी-शर्ट और गुलाबी रंग की पेंट पहनी है।

जो कि कपड़ों से ढका हुआ है।

और कमरे में लगी बल्ब जो कि कमरे को प्रकाश प्राप्त करने में सहयोग कर रही है।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

कमरे में कुछ बैलूंस भीलगे हुए हैं।

और कमरे में लगा बल्ब जो किकमरे को खूबसूरती देने में मदद कर रहा है।

कमरे का रंग सफेद है।

कमरे में बहुत सारी घरियां रखी हुई है।

और एक आदमी सीधी से उतरता हुआ नजर आ रहा है।

और ग्राउंड के किनारे बड़ा-बड़ा पेर भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक दुकान दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे कॉपी और किताब --

इस तस्वीर में हमें एक दुकान दिखाया जा रहा है।

जिसमें बहुत सारे तरह-तरह के केक रखे हुए हैं।

कमरे का रंग काला और लाल दोनों हैं।

इस तस्वीर में हमें कुछ लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एककमरा दिखाया जा रहा है जिसका रंग उजला और काला है।

उसी में से एक खिलौना मैंने अपने बेटे को दिया था लेकिन बेटा मेरा वह खिलौना तोड़ दिया है।

क्योंकि अब मैं खाने के लिए जाना पड़ेगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक घर दिखाया जा रहा है।

जिसके अंदर बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाली मशीन रखी है।

कुछ लोग बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक लड़का खड़ा होके फोन देख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक कमरा दिखाया जा रहा है।

वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं।

दोगला पंती वाला चीज है स्कूल से आप दूर ही रहे वही अच्छी बात है।

जिस पे कुछ लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं लेकिन एक औरत जाती हुई नजर आ रही है।

हमें इस चित्र में एक कमरा दिखाया जा रहा है।

फोटो खिंचवाती नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें एक बड़ी इमारत दिख रही है जिसका रंग ब्लू और पीला है।